इस चित्र में एक गार्डन दिखाई दे रा है बहोत से हरे-भरे पेड़-पौधे भी है और इस गार्डन में हरे कलर का डस्टबिन भी है और इस गार्डन में बैठने के लिए एक कुर्सी भी है।

है और इस दुकान में एक दरवाजा भी है और इस दुकान में एक पर्दा भी लगा हुआ है इस दुकान में बहोत से डब्बे है।

यह एक होटल है और इस होटल में बहुत से सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इनके कपड़ों का रंग काले हैं।

दिखाई दे रहे हैं एक बैग भी है और कुछ समाने भी रखी हुई है और एक कैमरा लाइट --

झूला सोलर पैनल वृक्ष पौधे बिजली का खंभा।

यह एक जूते चप्पल का दुकान है।

यह एक आपटमेंट है आपटमेंट में--

जहां रंग बिरंगी कपड़े साड़ियां चुन्नी --

एक आदमी के कपड़े का रंग पीला है और पैंट का रंग नीला है एक आदमी कपड़े का रंग--

लाल काला नीला और सर सरकारी दफ्तर के बाहर एक पेड़ भी है।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

इस शादी का कार्यक्रम फूलों से सजा हुआ है।

इस नाव के ऊपर एक छत सा बना हुआ है। यह छोटी नाव बड़ी नाव से रस्सी के सहारे बंधी हुई है।